यह जंगल काफ़ी अच्छी दिखती है | बगल में एक घर भी बना हुआ है वह घर में जंगली प्राधिकारी रहते --

यह एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक बोर्ड लगा हुआ है जो बैंक ऑफ बड़ोदा का बोर्ड लगा हुआ है।

जो गुब्बारा से सजाया हुआ दिखाई देता है।